जो काफी पानी भरा हुआ अगल बगल फूल बना दो ऊपर के साइड पर सफेद रंग का आसमान अगल बगल पेड़ पौधे हरे रंग की पत्तियों का नाम गया हुआ है।

एक गेट लगी हुई जो काले रंग का गेट लगा हुआ है पोस्टर लगी पीले रंग की कांच लगाए गए है बगल में गेट लगा हुआ है। सफेद रंग का दिवाल है ऊपर के साइड पे एक गेट लगी हुई हे।